बोहोत सारे डिब्बे जिस जो कलर के है। या ऑटो स्पेर्स करने के लिए अ जो आते है यूज़ में वो सारे दिख रहे है और बगल में देखिये--

रंग भरा है पेंट किया है सामने दो अ ब बोहत ढेर सारे ईंटे रखे हुए है।

और रास्ते बने हुए है वहां पे तार के खंबे गड़े हुए है। एक सामने कार खड़ी है।

की आप देख रहे है ये ड्राई कलर की दूकान है वैशाली ड्राई क्लीनर के नाम से।

और यहाँ पे कुछ अ आदमी बैठे हुए है खड़े हुए है अगल-बगल पेड़ है।